है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

स्कूल है स्कूल के दो आदमी है दोनों खड़े है।

यह एक बड़ा मकान है मकान बहुत सुन्दर है यह कॉलेज यह यह कॉलेज हो सकता है यह स्कूल भी हो सकता है इसमें बहुत सारा खिड़कियाँ लगा हुआ है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।